बहुत सारे अपने मे सब आपस मे सब खेल रहे है यहां पे हरा-भरा यहां पे घास है फ़ील्ड मे सब है।

ये एक गार्डन है और यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे लगे हुए है हरा-भरा है और यहाँ काफी अच्छी जगह है घुमने वाली जगह है यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था हो है ।

ये एक बिल्डिंग है पीछे पीला कलर का बड़ा-सा बिल्डिंग है और नीचे रोड है जहां पे बहुत सारे गाड़ी चल रहा है और बाइक पे भी है हेल्मेट लगाके उसपे घूम रहे है पीछे टेम्पो है लोग साईकल से जा रहे है और रोड अच्छा है काफी अच्छा है ओ --